लाल रंग का सिलेंडर रखा हुआ--

है आसमान में बादल--

है इसमें एक पतीली में कुछ मछली दिखाई दे रही--

का गोल करने वाला ट्रक दिखाई दे रहा--

भैंस दिखाई दे रही--

है जो नीले और गुलाबी रंग--

एक लोहे से बनी--

भी दिखाई दे रही--

इस फोटो मे एक--

पी_डी ब्लॉक दिखाई दे रहा--